नीचे नीचे रेड कलर का कार्पेट और ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा हुआ है साइड में घड़ी रखा हुआ है नीचे एक और कार्पेट बिछा हुआ है येलो कलर में --

जबबलून सब रखे हुए हैं टेबल पर नाइफ फ्स रखा हुआ है।

ये एक रूबन मेमोरियल जगह का नाम है जहां पे बिल्डिंग का है कलर --

पिलर लगे हुए हैं रोज टंगे हुए हैं अअयहां पे कुछ कुछ लिखा हुआ है टाइल्स साइड में भी ऑरेंज कलर से पेंट हुवाहुआ है।